जिसमें कुछ बाहर से ऑफिसर आए हुए हैं।

यह एक विद्यालय की तरफ बिल्डिंग लग रहा है सामने गार्डन है।

यहां पे बहुत सारे सेब रखे हुए है।

ऊपड़ में श्रेया कॉलर लैब है।

यह एक कांच की घड़ी है इसे हम लोग देहाती भाषा में--

जिस पे कुछ लिखा हुआ है पोल बगल से गुजर रहा है बड़ी बड़ी तारें हैं।

एक ऑक्सीजन सिलेंडर ल रखा हुआ है।

और इसकी ऊंचाई लगभग जादा है और इस कलर को उजला है नीचे से थोड़ी सी काई लगी हुई है।

और इस दुकान में सामान बेचा जा रहा है।

पत्ता नीचे गिरा हुआ है कुछ कूड़ा कबाड़ा है।